और चेहरे में लगाने के लिए क्रीम भी है और यह मेडिकल बहुत ही चलता है। यहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं मेडिकल पे ।

एक दुकान है और यह दुकान का नाम है बिरला इलेक्ट्रॉनिक । यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का बहोत सारा सामान --

रखे हुए हैं। यहाँ पे कूलर हैं फ्रिज है एसी है और भी सामान हैं इलेक्ट्रिक के और ये दुकान बहोत ही बड़ा है। यहाँ पे काँच लगाए गए हैं।